जिनमें की कुछ डिज़ाइन दार बनी हुई कुछ मूर्तियां छपी हुई है उनमें भी और ऊपर की साइड मे फ्लावर्स बनाए गए है सामने की ओर में एक फर्श है सीढ़ी भी है।

यहाँ पर एक नदी है नदी काफी बड़ी है और देखने पर लग रहा है की काफी गहरी है बाजू मे कुछ बौंड़री बनाई गई है जिस--

--हॉल है हॉल काफी बड़ा है और इसमें कैबिन बनाए गए है कैबिन के सामने बहुत सारी चेयर रखी गई है।

वहाँ पर एक मूर्ति है मूर्ति एक भगवान-बुद्ध की है जो काफी रैलिंग बनाई गई है और उसमे कुछ डिजाइनदार बनी गई है जिस मे बहुत सारी कुछ मूर्तिया है उपर के साइड मे पैड है जो की हरा है।

यह हॉल है हॉल काफी बड़ा है और आजू-बाजू मे बहुत सारी डेस्क रखी हुई है जैसे की कोई परीक्षा हॉल हो और यहाँ पर एक दीवार है।

यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ रखी गई है देखने पर लग रहा है की यह कोई भगवान का स्थल है यानि यहाँ कोई मंदिर है यहाँ पर तीन-चार मंदिर बने गए है।